एक हरा कलर के कुछ दिख रहा है नीचे वाइट फर्श है।

पोस्टर भी दीवार में टांगे हुए हैं।

अंदर में रैक बना हुआ है।

वहां पर भी एक टेबुल दिख रहा है।

एक आदमी का हाथ और दिख रहा है कुछ बॉक्स है यहां पे।

दो ठो पेट्रोल पंप भी है लगा हुआ है।

उसमें दो तीन खिड़कियां भी दिख रही हैं।

नीचे बहुत सारा गाड़ी आदमी खड़े हैं।

साइड में एक छोटा सा वेंटीलेटर भी दिख रहा है।

यहां बाइक शोरूम है दो तीन बाइक का भी दिख रहा है।

यहां पे चार पांच आदमी भी हैं।

हर भरा नीचे में पेड़ बहुत लगा हुआ है।

एक लेडिज भी उधर से आ रही है जो माथा पर बोरी लिए हुई है।

पीछे में भी बहुत सारा फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है।

काउंटर पर बहुत सारा बॉक्स रखे हुए हैं कुछ शीशा का भी रखे हुए हैं एक हैंड वॉश भी रखा हुआ है काउंटर पर।

दूर दूर तक बहुत पेड़ पौधे दिख रहे हैं ऊपर में नीला रंग के आसमान है।

दुकान दिख रहा है दुकान में सीसा का रेक शोपीस के लिए लगाया हुआ है।

सामने में एक खंबा भी दिख रहा है।

ऊपर में छत का रेलिंग भी है साइड में भी एक दरवाजा छत पर दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारा मजदूर है जो काम कर रहे हैं उन लोग हेलमेट लगाए हुए हैं व्हाइट कलर का शर्ट पहने हैं।

कुछ खुला जगह है खुला जगह में कुछ हरा भरा छोटा छोटा घास है।

यहां पर एक स्टेज बना हुआ है जैसे कुछ फंक्शन पार्टी हो।

बीच में जगह है साइड में दोनों तरफ से आदमी बैठे हैं।